व्हाइट कलर का कुछ कपड़ा नजर अ रहा है और --

दीवार है उसपे हरे कलर का पेंट दिखाई दे रहा हैऔर एक झाड़ है और असमान साफ नजर आ रहा है।

एक झरना दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहै हैं।

हमें एक बकरी का बच्चा नजर आ रहा है उसका रंग सफ़ेद और काला है और बहुत सारी बकरियां नजर आ रही है।

एक बहुत बड़ा कमरा नज़र आ रहा है और एक बहुत सारी लाइट नज़र आ रही है और दो खिड़कियां नज़र आ रही है और बहुत सारे लोग नज़र आ रहे है। ।

एक गाड़ी दिखाई दे रही है जिसका सफेद कलर दिखाई दे रहा है और एक इंसान दिखाई दे रहा है।

जो की रनिंग करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है और बहोत और ब्राउन कलर का कार्बेट नजर आ रहा है।

--और लाइट दिखाई दे रही है और बहुत- दो कंप्यूटर दिखाई दे रहे हैं और एक आदमी दिखाई दे रहा है व्हाइट शर्ट पहने हुए और कुर्सियां नजर आ रही है और टेबिल नजर आ रही है।

ए -और एक सफेद शर्ट पहनें आदमी नजर आ रहा है। और एक बैनर नजर आ रहा है और एक सड़क नजर आ रही है।

बहुत बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है और उसका कलर हरा दिखाई दे रहा है और बहुत सारी विंडो दिखाई दे रही हैं।